नामक एक संस्थान का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है।

आशा विज्ञान एवं जीव मैत्री सेंटर भी लिखा है।

तस्वीर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है।

पार्क के अंदर एक नारंगी और सफेद रंग की इमारत दिखाई दे रही है।

जिस पर पिज़्ज़ा सैंडविच बर्गर फ्राइड आइस फ्रेंच फ्राइज एक मिल्कशेक की तस्वीर है।

कुछ दूरी पर और पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

पानी कई स्थानो पर छोटी छोटी झरने के रूप में गिर रहा है।

तस्वीर में एक शांत वन चित्र दिखाई दे रहा है।

इमारत की एक दीवार जालीदार पैटर्न वाली है।

जबकि दाएं ओर की इमारत लाल और सफेद रंग की है।

टेक्सटाइल है दुकान के साइन बोर्ड पर पर्दे--

टुकड़े या अन्य निर्माण सामग्री हो सकती है।

जीन पर अनियमित आकार के सफेद धब्बे या धारियां है।

और उनके सामने एक पक्का रास्ता या फुटपाथ है।

प्लेटफार्म के दोनों और ट्रेनों की बोगियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

तस्वीर में एक विवाह समारोह का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग औपचारिक कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं।

ऑटो रिक्शा के पास कुछ लोग खड़े हुए हैं और सड़क पर--